हमें एक छोटे बच्चे का पुतला नज़र आ रहा है जिसको पीले रंग की ड्रेस पहनाई हुई है और ड्रेस के कमर पे एक लाल रंग का रिबन है इस डमी के ऊपर बालों का विग भी लगाया हुआ है।

सामने एक बहुत बड़ी नदी नजर आ रही है जिसमे एक कश्ती है कश्ती के अंदर दो व्यक्ति बैठे हुए हैं एक व्यक्ति कश्ती को चला रहा है |

कुछ महिलायें खड़े हैं एक महिला ने लिफाफा पकड़ा हुआ है हाथ में ।

सामने की तरफ काउंटर पे काफी पेन नजर आ रहे है ऊपर की तरफ कुछ फ्लेक्स लगा हुआ है इग्नू बुक्स यू.पी.एस. नोट्स साथ में कुछ बुक्स भी चिमटी से लगी हुई नजर आ रही है।

तरफ एक नीले रंग की एक बिल्डिंग नजर आ रही हैं जिसके ऊपर एस.बी.आई का बोर्ड लगा हुआ हैं।